यहा पे एक फोर व्हीलर खड़ी हुई देख सकते है इस का जो पहिया वो निकला हुवा है और उसका जो बोनेट है वो बाहर निकला है।

देख सकते है की एक नदी है और नदी के पीछे आप देख सकते है की एक मेदान है और मेदान मे तो आप देख सकते हो की क-पानी जो है क-कितना साफ सूथरा है।

देखिए आप जो है आप लोग देख सकते हैं की इसे जो हे की जो अअ बिल्डिंग बनी हुई है और बिल्डिंग का काफ़ी अच्छा इसमें जो हैं।